हेलो दोस्तों यह कोई मछली-मछली का दृश्य है जहां पर मछलियां तीर तैर रही हैं पानी में।

इसके अंदर फल फ्रूट और सब्जियों की दुकान है।

और बहुत सारे आदमी वगैरे हैं सड़क दिखाई दे रही हैं एक पेड़ दिखाई दे रहा है दुकानें दिखाई दे रही हैं दुकानें एप्पल फ्रूट --

मुझे यहां पर कोई पावन धर्म मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है एक पेड़ है और खंभे से लगा रखे हैं।

और घर का दृश्य घर घर मंदिर मंदिर मंदिर म--

तीन आदमी खड़े हैं और हरियाली नहीं ऐसी की जगह है।